यहां पे अलमारी लगी हुई है और यहां पे चेयर रखी हुई है बहोत सारी कॉपी किताबें रखी हुई है।

बने हुए है और यहां पे टेडी बियर भी लगे हुए हैं और यह बहुत ही --

और यहां बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पे लोग भी दिख रहे हैं और यहां पे बाइक और भी खड़ी है।

एक बाइक है जो यहां बाहर आ रही है एक लड़के और है जो पेहन कर ब्लैक कलर की रखी है उसके आगे एक और ल --

यहां पे बहुत सारी मच्छरदानी की लगी हुई है और यहां पे शैंपू परफ्यूम

पेंटिंग भी दीवार पे बनाई गई है यहां एक कूलर रखा हुआ है चेयर रखी हुई है और एक पैंफलेट भी रखा हुआ है।

यहां पे पेड़ लगे हुए हैं बहोत सारे यहां पे एक पार्क लगा हुआ है जहां पे बहोत सारे पत्थरीली के चेयर बनी हुई है यहां पे बैठना उठने के लिए काम आती है।

चेयर लगी हुई है और एक मेज भी रखी हुई हैं यहां पे कोई भी नहीं बैठा है ए_सी लगी हुई है और पंखा भी चल रहा है।

एल_सी_डी टी_वी और अलग अलग तरीके के फ्रिज भी है।

अलग अलग प्रकार की वाशिंग मशीन रखी हुई है कार्टून रखे हुए हैं और यहां पे कूलर भी रखे हुए हैं ऐसे है।

फुलझडियां और फूलों की माला सजाई हुई है जो ऑरेंज और बीच में येलो कलर की है और यहां पे --

यहां पे मॉल है यह दूध डेरी है यहां पे--